सामने एक काली बाल्टी रखी हुई है । एं दीवाल पे एं लोहे की सरिया से गेट बने हुए हैं ।

इमारत के बाहर ढेर सारी बाइक खड़ी हुई हैं ।

टाइल्स की सीढियाँ बनी है जो कि कत्थई और वाइट कलर में हैं ।

रेड और गोल्डन कलर का सोफा रखा हुआ है परदे से डेकोरेट किया गया है।